पौधे भी नजर आ रहे है बहुत बड़ा पेट्रोल टैंक है।

यहाँ डंडी रखे हुए है यहाँ।

इसकी चोंच है और पैर भी येलो है और ब्लैक कलर का है यहाँ।

रोड पड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़-पोधे भी लगे हुए हैं।

टंगी हुई है यहाँ पर साड़ी-कपड़े हर तरह का सामान आपको य --

पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा --

यह लग रहा है कोई वहाँ पे --

पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे जिओ लि --

ऐसा लग रहा है ये एक कुछ कार्यक्रम भी चल रहा है। यहां पर एक कुछ भी लिखा हुए --

भी रखा हुआ है यह एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है यह बहुत बड़ा रो --

ये एक बहोत बड़ा सैलून नज़र आ रहा है और --

यह वह व्यक्ति बैठे हुए हैं य --

यहाँ पर एक बहोत बड़ा स्कूल नज़र आ रहा है यह।

सब रोड भी यहाँ पर गड़ा हुआ है यहाँ पर बड़े-बड़े ब्रक्ष लगे --

और बड़े-बड़े बैच भी लगे हुए हैं एक-एक --

यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे हरे-हरे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं ये जलहरी --

यह बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग --

पेड़-पौधे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक दीवाल दिखाई दे रही है जि --